यह एक सलून है इसमे यहां पर कुर्सियां रखी हुई है यहां कांच भी लगे हुए है यहां पर बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

यहां आस-पास कहीं सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ --